एक टेबल का कलर ग्रीन है एक टेबल का कलर ब्लू है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग का कलर व्हाइट है।

तीन ए_सी लगा हुआ है कैफै लिखा हुआ है कैफे का कलर रेड है।

यह एक गधा का चित्र है गधा का कलर व्हाइट और ब्लैक है।

गिन्नी किराना स्टोर लिखा हुआ है एक आदमी एक बच्चा खड़ा है।

एक औरत ने प्लास्टिक पकड़ा हुआ है।

एक में एल_ई_डी लिखा हुआ है एल_इ_डी का कलर व्हाइट है।

एक एक्स्ट्रा बॉस लिखा हुआ है।

बहुत सारा आदमी खड़ा है एक आदमी ने ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ--

बच्चे ने व्हाइट कलर का चप्पल पहना हुआ है एक बोतल फेंका हुआ है।

इसमें एक खंभा है खंभा का कलर व्हाइट और ऑरेंज है खंभा में लाइट लगा हुआ है एक पाइप निकला हुआ है।

एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड में कोको कोला लिखा हुआ है।

एक टेबल रखा हुआ है टेबल में एक लैपटॉप रखा हुआ है ।

उस आदमी ने व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।